इस चित्र में हम एक दवाई दुकान देख सकते है।

इस तस्वीर में हम इस स्टेशन इस प्लेटफार्म को ब महत्पूर्ण तरह सी देख सकते--

वो एक लेक या झील के सामने खड़े हो कर खींचते हुए--